सैलून है। इस सैलून में बहुत सारे आदमी बाल कटाने दाढ़ी बनाने के लिए आये हुए हैं। यहाँ पर बहुत सारे लोग बाल कटा रहे हैं। लोगो की भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर बहुत अच्छे से बाल काटा जाता है दाढ़ी बनाया जाता है। इस सैलून में बहुत सारे लाइट्स --

यहाँ पर एक बड़ा सा पहाड़ है। इस पहाड़ पर बहुत --

ऐसे इस ऑफिस में बहोत सारे एल इ डी बल्ब लगाये गए हैं। यहां पे सीसीटीवी कैमरा भी है।

यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ पर देखने में बहुत सारा आदमी भीड़ लगा हुआ है। यहाँ पे --